दुकान के अंदर अलग-अलग प्रकार का सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है--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

मैदान बना हुआ दिखाई दे रहा है।